ruby में for और each loops के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे
शब्द loop का मतलब ruby में भिन्न प्रकार के लूप्स
for लूप के उपयोग और each लूपिंग कन्स्ट्रक्ट के उपयोग
यहाँ हम उपयोग कर रहे हैं
ubuntu version 1204
ruby 193
इस ट्यूटोरियल के अनुकरण के लिए आपके पास इंटनेट कनैक्शन होना ज़रूरी है
आपको लिनक्स कमांड्स टर्मिनल और टेक्स्टएडिटर का ज्ञान होना ज़रूरी है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
अब मैं समझाती हूँ कि ruby में loop की तरह क्या उल्लिखित है
loop कमांड या कमांड्स का सेट है जो निश्चित बार निष्पादित होता है
ruby निम्नलिखित मुख्य स्टेटमेंट रखता है
for each
while until
इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि for और each लूपिंग कन्स्ट्रक्ट को कैसे उपयोग करें
शुरू करने से पहले कृपया अपनी होम डायरेक्टरी में निम्न फ़ोल्डर्स बनायें
ttt ruby hyphen tutorial looping hyphen statement
कृपया सब फ़ोल्डर्स बनायें जैसा वहां उल्लिखित है
अब हमने आवश्यक फ़ोल्डर्स बना लिए हैं
आगे बढ़ते हैं
ruby में for लूप का रचनाक्रम दिए गए के जैसा है
for variable in a collection of objects
ruby code
end
इसको एक उदहारण से सीखते हैं
gedit में एक नयी फाइल बनाते हैं जैसे प्रारंभिक स्तर के ruby ट्यूटोरियल्स में प्रदर्शित हैं
और इसको for hyphen loop dot rb नाम दें
मेरे पास पहले से ही for लूप का कार्यकारी उदाहरण है
इस उदाहरण को पूरा करने के लिए आप कोड टाइप कर सकते हैं
इस उदाहरण में मैंने एक for लूप घोषित किया है
हमारे पास 1 से 20 तक नंबर्स का सेट है
हम for लूप में एक वेरिएबल i घोषित करते हैं
1 से 20 तक नंबर्स के सेट में i को पहले एलिमेंट से प्रारम्भित किया जाता है
for लूप की घोषणा के कारण यह कोड 1 से 20 तक प्रत्येक नंबर पर दोहराया जाता है
for लूप में घोषित puts मेथड आउटपुट के लिए जिम्मेदार है
अब टर्मिनल खोलें और टाइप करें
ruby space for hyphen loop dot rb और आउटपुट देखें
आउटपुट 1 से 20 के नंबर्स का array होगा
इस उदाहरण में हमने इंक्लूसिव रेंज के लिए for लूप घोषित किया
इसमें 1 से 20 तक के नंबर्स सम्मिलित हैं
आगे हम नॉनइंक्लूसिव रेंज के लिए for लूप का कार्यान्वयन देखेंगे
कोड का अगला भाग टाइप करना जारी रखें
नॉनइंक्लूसिव का मतलब यह ऑब्जेक्ट्स के समूह में अंतिम एलिमेंट सम्मिलित नहीं करेगा
यहाँ for लूप 1 से 20 तक की नॉनइंक्लूसिव रेंज के लिए कार्यान्वित हुआ है
आप शीघ्र ही देखेंगे कि नंबर 20 आउटपुट में प्रिंट नहीं होगा
अंतिम अंक सम्मिलित नहीं हुआ है जब आपके पास नंबर्स के बीच में तीन डॉट्स हैं
अब टर्मिनल खोलें और टाइप करें ruby space for hyphen loop dot rb
और आउटपुट देखें
आउटपुट अभी भी नंबर्स का array होगा लेकिन नंबर 20 सम्मिलित नहीं होगा
अब आप अपना for लूप लिखने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम होने चाहिए
ruby में each लूप का रचनाक्रम निम्न प्रकार है:
a collection of objects dot each do item
ruby कोड end
इसको एक उदाहरण से समझाते हैं
gedit में एक नयी फाइल बनायें जैसे कि ruby के प्रारंभिक ट्यूटोरियल्स में प्रदर्शित है
और इसको नाम दें each hyphen loop dot rb
मेरे पास each लूप का एक कार्यकारी उदाहरण है
इस उदाहरण को समझते समय आप कोड भी टाइप कर सकते हैं
मैंने इस उदाहरण में एक each लूप घोषित किया है
हमारे पास 1 से 20 तक नंबर्स का सेट है
each लूप में हम एक वेरिएबल i घोषित करते हैं
1 से 20 तक नंबर्स के सेट में i को पहले एलिमेंट से प्रारम्भित किया जाता है
each लूप की घोषणा के कारण यह कोड 1 से 20 तक प्रत्येक नंबर पर दोहराया जाता है
each में puts मेथड घोषित किया है जो आउटपुट के लिए जिम्मेदार है
अब टर्मिनल खोलें और टाइप करें ruby space each hyphen loop dot rb
और आउटपुट देखें
आउटपुट 1 से 20 के नंबर्स का array होगा
उपरोक्त उदाहरण में हमने इंक्लूसिव रेंज के लिए एक each लूप घोषित किया है
इसमें 1 से 20 तक सारे नंबर्स सम्मिलित हैं
आगे हम नॉनइंक्लूसिव रेंज के लिए each लूप का कार्यान्वयन देखेंगे
कोड के इस भाग को टाइप करना जारी रखें
नॉनइंक्लूसिव का मतलब यह ऑब्जेक्ट्स के संग्रह में अंतिम एलिमेंट को सम्मिलित नहीं करेगा
यहाँ each लूप नंबर्स 1 से 20 तक की नॉनइंक्लूसिव रेंज के लिए कार्यान्वित हुआ है
शीघ्र ही आप देखेंगे कि नंबर 20 आउटपुट में प्रदर्शित नहीं होगा
जब नंबर्स के बीच 3 डॉट्स होते हैं तो अंतिम डिजिट सम्मिलित नहीं होती है
अब टर्मिनल खोलें और टाइप करें ruby space each hyphen loop dot rb
और आउटपुट देखें
अब आप पर्याप्त रूप से अपना each लूप लिखने में सक्षम होने चाहिए
हम कैसे निर्धारित करें कि कौनसा लूपिंग कन्स्ट्रक्ट चुनना है
for लूप कन्स्ट्रक्ट को फिर से कॉल करते हैं
पहले उदाहरण में for उपयोग करके हम 1 से 20 तक नंबर्स के सेट को दोहराते हैं
अपने टर्मिनल में ruby space for hyphen loop dot rb को निष्पादित करें आउटपुट देखें
अब gedit में कोड देखते हैं
जब आप for लूप का उपयोग करते हैं तो ruby पीछे से each मेथड को कॉल करता है
और समान आउटपुट के लिए each या for किसी को कॉल करें
चूँकि for भी each को कॉल करता है अतः इसके बजाये each लूप का उपयोग करना बेहतर है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
इसको सारांशित करते हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा for लूप का उपयोग
each कन्स्ट्रक्ट का उपयोग
for के बजाये each उपयोग करने का कारण
उपरोक्त लूपिंग कन्स्ट्रक्ट उपयोग करने के उदाहरण
एक नियत कार्य की तरह
उचित लूप कन्स्ट्रक्ट उपयोग करके एक ruby प्रोग्राम लिखें
1 से 20 तक नंबर्स के सेट से इवन even नंबर्स का आउटपुट बनायें
निम्न लिंक पर उपलबध वीडियो देखें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
ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाणपत्र देती है